कुर्सियों पे बैठे हैं अपना डांस कर रही और स्किप कर रहे हैं।

वेलकम डांस कर रहे हैं और गेस्ट ऑफ हॉनर्स भी बैठे हुए हैं पीछे।

इट्स अ इंडिगो एयरपोर्ट इंडिगो का प्लेन है जहां पे एयरपोर्ट है।

और इंडिगो जहां तक हमें पता है कि इंडिगो इज द वेरी फेमस --

ये छठ पूजा है छठ पूजा में जो कि बिहार में बहुत माना जाता है इसको।